अमूल फैक्ट्री लग रही है | इसमें देख सकते हैं कितने शीशे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं | बहुत ही सुंदर सा बेस इसका जो है वह दिखाई दे रहा है ।

और इसका बहुत ही अच्छा सूंदर स्वरुप यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। इधर एक नारियल का --

के बगल में ये बंदा यहां पे सैलून खोल दिया गया है यहां पे देख सकते --